और यहाँ पर बहुत सारी खिलाडि है जो की खेळ खेल खेल रह है खेल-खेल रहे है और यहाँ हा पर काफी पेड़-पौधे है और यहाँ पर काफी पेड़-पौधे है एक टावर लगा हुआ है जो की नेटवर्क टावर है यहाँ पर बहुत सारे व्यक्तिया खेल खेल रहे--